यहाँ पे एक बाइक का शो रूम है जो रॉयल इनलैंड का है और उसमे बुलेट वगेरा मिलता है बहुत महगा शो रूम है ये और काफी लम्बा चोड़ा दिखाई दे रहा है पेन्ट कर दिया बहुत अच्छा लग रहा है देखने में --

होता है वहाँ पे फोटो कॉपी भी होता है और अस्टेस्नि जैसा किताबे मिले जाते यहाँ पे बहुत अच्छे महंगे-महंगे कलम कॉपी भी मिला जाता है आगे एक कोंटर लगा हुवा है जो लकड़ी का बना होता है यहाँ पे --

इसमें एक रिक्शा है जो रिक्शे में डी.जे. बाँध दिया है और दो चोंगा भी लगाया गया है जिसमें गाना बजता है। और रिक्शे के तीन पहिये होते हैं। रिक्शे के साथ-साथ फिर जनरेटर वगेरा भी है यहां पे |

यहाँ पे एक बोलेरो भी खड़ा है जो अच्छा लग रहा हे देखने में उसके अलावा यहाँ पे नाईट का समय है बल्प वगेरा जला हुवा है देखने में मजा आ रहा है और बोहोत मन ऊँची मंजिल --